सब लोगों को अच्छा लगता है बैठता है एन्जॉय करता है खेलता है कूदता है।

अ अ मेट बिछा कर के योगा कर रही है उधर बोर्ड है उधर पीछे खिड़की गेट है उधर खिड़की है गेट के अंदर में खिड़की है और रूम है पर्दा लगा हुआ है ब्लू कलर--

केक की दुकान है नीचे येलो कलर का केक है उस पे दो फ्लावर है एक पिंक कलर का है एक ब्लू कलर का एक केक है जो पिक कलर का है उसके ऊपर व्हाइट और चॉकलेट बैठा हुआ है।